यहां पे मुझे एक गाड़ी दिखाई दे रहीं हैं जोकि एक टाटा वालों की गाड़ी है।

अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी फवाए चलती रहे बहोत अच्छा यहां पर यह प्रबंध किया हुआ है।

यहां पर दो सिट रखी हुई है जो की हरे कलर की सीट है।

मेमोरिली स्कूल है ये पार्क है ये पार्क एक पुतला खड़ा हुआ है।

यहां पर मुझे कुछ बुक्स दिखाई दे रहे हैं।

क्योकि डब्बे में कुछ इनकी पेक किया गया हैं।

और सफेद कलर के डिब्बे भी यहाँ पर पेले कलर के भी डिब्बे ह--

और एक स्प्लेंडर बाइक दिख रही है जो की ब्लैक अं कलर की बाइक है जो दे --

यहाँ पर मुझको एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने एक काली कलर की पैंट पहने हुए है।

और यहां पर बहुत सारे मुझको पत्थर दिख रहा है दिखाई दे रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

और यहां का नजारा भी बहुत शानदार है बहुत ही अच्छा लग रहा है।

इधर ले जाने में इसके टायर भी दब्ब रहे है और यहाँ पर मिटी पड़ी हुई है चारो तरफ पेड़ पौधे खड़े हुए है।

बहत अच्छे यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है एक लाल कलर का सोफा सामने ही रक्खा हुआ है।

सिलेंडर भी रखा हुआ है जिसमे हवा भर रहा है और--

सिस्टम किया हुआ है यहापर गुब्बारे भी लगाए हुए है की अब ये दुकान नयी नयी खुली हुयी है और देखने बहुतही आछ्या लग रहा है।

और बहोत अच्छे शानदार होटल बनाए हुए है नीचे कुछ दुकाने चल रही है।

और ये फोटो बहत ही दूर से क्लिक किआ गया है जो देख ने बहत ही अच्छा लग रहा है।

यह एक डाक घर हे जिसपे एक लाल कलर का बाहर की साइड में--

ये बॉक्स भी हुआ है जिसमें लोग बाद सिटी की डालते हैं और येह--

और इसपे लाल कलर का पेंट किया हुआ है जो देखने बहुत ही अच्छा लग रहा है।

और इसके पीछे पार्क है और यहा पर बहुत पेड़ पौधे लगे हुए है पीछे बहुत अच्छी साफ सफाई की गई है।

वो वो पुला तालाब युवानी के नाम से है।

और ऊपर कि साईट नील कलर के बले बल्ब लगे हुए है।

उसमें एक लड़का ये एक चादर खोल रहा है और एक अ दादाजी नीचे के साईड में कुछ अ तागा लगा रहे है जिससे कि वो बढ़िया अच्छी तरीके से यहा पर दरी बंध सके--

ये दरी बन सकती है चादर बन सके जो कि छोटे नाव और सफेद कलर की यहां पर चादरें बनाई जाती--

और बराबर में गेट लगे हुए हैं एक लड़का फोटो खींच रहा चार ए_सी लगी हुई है।

यहां पर पंखे कूलर इलेक्ट्रिक सामान यहां पर बिकता है।

यहां पर कुछ दो तीन मूर्तियां रखी हुई है और ऊपर--

उसमें भीतर तस्वीर रखी हुई है और चारों तरफ--

और इसके ऊपर ही बहोत अच्छी डेकोरेशन की गई है जो कि पी_ओ_पी से की हुई है लाइटें अच्छी लगी हुई है।

और यह लकड़ी से बनाया हुआ है उसकी डेकोरेशन की गई है।

वो लकड़ी की है इसके बहोत अच्छे यहा पर विंडोस बनायी हुई है कुछ सिस्टम बनाये हुए है जो डिजाईन से बनाये हुए है।

खिड़की बनाई हुई है जो देखने में बहोत ही अच्छी लग रही है बलेक कलर के यहाँ पे सोफे पड़े हुए है जो बहोत ही अच्छे लग रहे है।

और इसके चारों तरफ बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है सफेद कलर की डेकोरेशन की गई है।

यहां पर कुछ मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि शीशे में इस तरफ--